इधर कुछ एक आदमी खड़ा होके मोबाइल चला रहा है दो उधर कुछ पकड़ के खड़े हैं अपने काम को अंजाम दे रहें हैं घर के बाहर हैं पीछे घर के अंदर बहुत ही बड़ा हॉल नजर आता है जोकि बहुत ही शानदार लग रहा है।

देख सकते है सफेद और लाल पीला हरा सब इसमें लगाया गया है फूल पत्ती लगायी गयी है। इस हार को काफी बड़ा बनाया गया है ऊपर टांग दिया गया है इसको जो देखने में बहोत ही आकर्षित लग रहा है।

देख सकते हैं की पीछे की दीवार भी कितनी बढ़िया पेट की गई है बहुत ही अच्छा लग रहा है बीच में पिलर भी लगाया गया है उसमें जो की बहुत ही शानदार लग रहा है ये मूर्ति बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई है।

किसी ने एक मैडल को जीता है अपने मेहनत के वजह से क्यूंकि इसको यहाँ पे रख के सजाया गया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है इसको बेंच पे लगा के रखा गया है दाएं-बाएं टेडी भी बियर रखा है इस पे बहुत ही अच्छा लग रहा है।

यहाँ पे बहुत ही हरा-भरा और बहुत ही लम्बा-चौड़ा मैदान है इसमें इसमें हम देख सकते है छोटे-छोटे बना के इसको घेरा गया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बहुत बड़ा पत्थर है और बहुत ही झाड़ पेड़-पौधे उगे हुए है जो की बहुत ही अच्छा और शानदार लग रहा है हरी-भरी घासे है यहाँ पे देख सकते है नीचे पेड़-पौधे भी उगे हुए हैं।